ये एक गार्डन है मेर्रिज गार्डन है और ये सजा हुआ है इसमें सामने स्टेज व्हाइट येल्लो एंड ग्रीन कलर से पूरा फूलो से डेकोरेशन किया हुआ है।

यह एक मेला है मेले के अंदर बहुत सारी पब्लिक खड़ी है और ये सामने मौत का कुआं है यहाँ पर बहुत बड़ा कुआं रहता है--

पीछे एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है और जो मस्जिद है उसके गेट जो हैं वो ग्रीन हैं और ऊपर एक मिनारा है उसके छोटा सा और बहोत ही खूबसूरत है।

और गिफ्ट के आइटम भी रैप करने के मिलते हैं बाहर एक आदमी बैठा हुआ है उसके पीछे एक साइकिल खड़ी --

ये एक फैक्टरी है जहाँ पर काम चल रहा है | एक ट्रक खड़ा हुवा है।

बीच में बच्चों की फिसल पट्टी झूले झूलने के एक लड़की खड़ी है जो की फ़ोटोज़ ले रही है। और बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हैं यहाँ।

ये एक पार्क है जो की पूरा डेकोरेट करा हुआ है लाइटों से और बीच में एक फाउंटेन चल रहा है जिसके आस-पास गोल बॉउंड्री उठी हुई --

ये एक मैदान है जहाँ पर खेल होते हैं।